और कुछ लोग टेंट के निचे खड़े हैं चल रहे हैं और यहाँ पर बैलून लगे हुए हैं।

और यहां पे एक लड़का बाल कड़वा रहा है और एक लड़की और तीन लोग बेढे हुए हैं जो की पिछे की साईड है।

जिस पर एक लड़का बैठा हुआ है हेलमेट पहन के।

इस तस्वीर में कुछ बच्चे कुछ अ काम कर रहे दिख रहे है यहां पर एक टीचर --

इस तस्वीर में एक लड़का टोपी पहेन के एक रेड कलर का जौकेट भी पहेना हुआ है और उसने जींस पहना हुआ है।